और उसके पास एक कंप्यूटर रखा है।

हॉल में कुछ चेयर्स रखी हुईं हैं।

हैं यह लड़का जिम के अंदर बैठा है।

यह कीड़े सफेद रंग के हैं।

काफी सारी दवाईयां रखी हुई दिख रही हैं।

इस तस्वीर में एक बस दिखाई दे रही है।

काफी सारे फूल्स रखे हुए हैं।

एक गुलाबी रंग का बड़ा फूल है।

पीले रंग के फूल भी रखे हुए हैं।

दर्शनीय के लिए एक पार्क बनाया हुआ है।

काफी सारे फूल रखे हुए दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक होटल दिखाई दे रहा है।

सड़क है। सड़क पर कुछ लोग आ जा रहे हैं।